इस दृश्य में दिख रहा है कि एक लड़का अपनी फोटो खींच रहा है।

कुछ लड़के तो यहां पे बैलून लगा रहे हैं और इस बैलून का रंग सफेद और ब्लू रंग है।

बहुत सारे वॉल घड़ी जो दीवाल पे लगी हुई है।

यह एक बैंक का दृश्य है।

यह एक सैलॉन का दृश्य है।

इस सैलून के काउंटर के पास कोई नहीं दिखाई दे रहा है इस सैलून का नाम थ्री सिक्टी सैलून और फैमिली सैलून है इस--

इसके बाहर में सिक्योरिटी भी लगी हुई है।

यहां से सारे घरों की छतें दिखाई दे रही हैं।

इस दुकान का नाम राजश्री इंटरप्राइजेज है।

इसका मेनू ब दिया हुआ है और इसमें एक तस्वीर है बर्गर का बना हुआ है समोसा का बना हुआ है।

यह एक मोमो की दुकान है।

बहुत सारे सर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह आयोजन किसी मंदिर या बड़े हॉल में हो रहा है।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य दिख रहा है।

हॉस्पिटल के नीचे में दो कार दिखाई दे रही है।

दोनों व्यक्ति अपने हाथों को चेहरे पर टीका कर शांत बैठे हुए हैं।